ये किसी ने पूल के पास तस्वीर ली है इसमें आपको साइड में नदी नज़र आ रही है। ब्रिज के ऊपर से ये पिक ली गयी है। सा साइड में हरे-हरे पेड़ नज़र आ रहे हैं।

पीछे आपको मशीने नज़र आ रही होगी यहाँ पे एक वर्कर और नज़र आ रहा है तो या --

ये किसी म्युजियम की पिक मालूम होती है जहां आपको सामने मिल जाएंगे साइड में फूल हैं बीच में बहोत अच्छे से फूल हैं एक मूर्ति है जो कि सायद यीशु की है।

के तौ पे और भी दूर-दूर से लोग इस जगह पे घूमने आते हैं इस जगह का आनन्द लेते हैं। पुरानी चीजों के बारे मे जानते है।

ओय स्टॉल केह सकते हैं खाने की। जिसको रास्ते में कुछ खाना पीना ठेलो से पसंद हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है यहां का।

सकी बात ही अलग होती है बट वक्त बवक्त इसको प्रिपेयर भी किया जाता है रेडी भी किया जाता है पहले से बट तब भी उम्दा --

'' और काफी हरा भरा माहौल लग रहा है कि इंसान दम दिल जा करके उसको सुकून में दिल आ जाए बहुत ही अच्छी जगह प्लेस मालूम होती है आई डोंट नो कहां की है बट या बहुत अच्छा लोकेशन है। ''

ये एक ऐतिहासिक गेट का हिस्सा है जोकि ब्लैक एंड व्हाइट अ पिक में लिया गया है। आप जैसा देख पा रहे होंगे इस गेट में लखोली के ईंटों --